मंदिर के ऊपर तीन गुंबद बने हुए है।

वहीं बहुत सारी केबिन बनी हुई है और उन सफेद केबिन के सामने --

यहां एक बड़ी सी इमारत बनी हुई है और येह एक सैंड सोल्जर एकेडमी है।

एक सोफा भी रखा हुआ है सोफे के आगे एक छोटी टेबल भी रखी हुई है लकड़ी की।

वही एक कांच का मेंन गेट लगा हुआ है दुकान के अंदर हरे रंग की --

एक एक काले और नीले रंग की कुर्सियां रखी हुई हैं इन रैक्स का रंग सफेद है।

तीन से चार तिकोनी आकर के पराठे रखे हुए हैं पराठों का रंग पीला है।

इसके ठीक सामने नीले और काले रंग की एक बड़ी गेट लगी हुई --

को दिखाया गया है यहां पर रेड कारपेट बीछा हुआ है।

सामने एक बड़ी सी सफेद चादर बिछी हुई है जिस पर बहुत सारी लड़कियां --

बहुत सारे हरे रंग के पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

उसकी ठीक सामने लाल रंग की एक दीवाल बनी हुई है।